इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक रास्ता दिखाई दे रहा है सड़क है।

सामने देखिएगा फ्रेंड एक लड़की खड़ी है जिसने स्कर्ट और टॉप पहना हुआ है काले कलर का टॉप है।

इस पिक्चर मे देखियेगा इस इमेज मे एक कमरा दिख रहा है जहां पर --

एक बड़ी सी नदी दिख रही है जो की पानी से भरी हुई है और उसके ऊपर एक पूल है।

एक मूर्ति है काफी बड़ी मूर्ति है और नीचे एक लड़का खड़ा है मूर्ति के पास।

और ऑटो रिक्शा दिख रही है बाइक्स स्कूटर चलते हुए दिख रहे हैं।

कई सारी दुकाने दिख रही है बहुत सारी दुकाने हैं।

एक सामने की तरफ बाउंड्री भी दिख रही है और कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं।

और नीचे की तरफ देखेंगे तो बिजली के तार दिख रहे है ऊपर की तरफ नीचे कई सारे कारें खड़ी हुई दिख रही है।

इस इमेज में देखियेगा फ्रेंड यहां पर दो लोग दिख रहे हैं और ऊपर प्रवेश लिखा हुआ है।

इस इमेज में देखिएगा फ्रेंड यहां पर एक सामने छोटासा पार्क दिख रहा हैं और सामने एक बड़ीसी बिल्डिंग हैं।

कांच की खिड़की दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

हेलो फ्रेंड्स यहां पर आप देखिएगा।